ये चित्र है किसी छत की जहा पर दो मजदूर छत डालते हुए दिखाई दे रहे है छत पे सीमेंट का काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है और मजदूर काम कर रहे है।

यह चित्र है एक ए एक फंक्शन की जहा पे समारोह चल रहा है कुछ लीग सफ़ेद कपड़े पहने टोपी लगाए खड़े है।

ये चित्र है एक बिल्डिंग की जिसपे वो सिल्वर रंग से उम बनी हुई दिखाई दे रही है नीचे एक बाइक और एक --

ये एक ये एक अ एक ईस्टैच्यू है जिस अ ह म जो की इमारत के उपरा रखा हुआ है और न लाल रंग की दिवारे दिख रही है।

यह एक पेड़ है जिसमे बगीचा है जिसमे कई तरीके के पेड़ दिखाई दे रहे है और मूर्ति लगी हुई है और इस्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है।

यह चित्र है एक मस्जिद की जहाँ सफ़ेद रंग से पुती हुई और अह और अह कई रंग की उनकी यहाँ पे लाइटे दिख रही है।